यह गाड़ी भी नजर आ रही है।

ये एक डोंगा है जिसमें बहुत नहीं दो मनुष्य बैठे हुए हैं।

यहां लाइट वगैरह लगी हुई है।